इस इमेज यहां पर एरोप्लेन दिखाई दे रहा है और यहां पर एक व्यक्ति ग्रीन जैकेट में नजर आ रहा है।

इमेज में यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और दो यहाँ पर व्हाइट टंकी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहाँ पर एक सफेद कार की डिकी खुली हुई है नीचे एक व्यक्ति रिपेयर करता दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में यहां पर दो तीन बसें खड़ी दिखाई दे रही हैं और कुछ लोग भी यहां पर नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक इमारत दिखाई दे रही है और गेट के पास में एक बच्चा खड़ा नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक नर्सरी दिखाई दे रही है जहां पर पौधे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में दिखेगा यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है। बाहर ग्रीन कलर का बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा है।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

इस इमेज में देखने को सामने यहां पर एक तबेला दिखाई दे रहा है और बाहर ब्लू कलर का डस्टबिन रखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसपे श्री अय्यप्पा मंदिर लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखें को सामने यहां पर एक गिफ्ट दिखाई दे रहा है और ऊपर धर्मशाला लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज मे देखियेगा सामने यहाँ पर एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है और बाहर एक कार खड़ी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में देखियेगा बाहर एक बाहर एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है जहां पर दो व्यक्ति काम करते नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है जहां पर कई सारे मोटर साइकिल और वॉचमैन भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक मेट्रो स्टेशन दिखाई दे रहा है और यहां पर एक ट्रेन भी दिख रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर कुछ बिल्डिंगे में दिखाई दे रही हैं और नीचे कई सारी कार खड़ी हुई नजर आ रही हैं।

इमेज में देखिएगा सामने यहां पर बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है और बाहर एक यहां पर पार्क भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक अ मॉल दिखाई दे रहा है जहां पर कई सारी चीजें पैकेट में रखी नजर आ रही हैं।

इस इमेज मे देखिएगा यहां पर टेबल पर कई सारी मछलियां दिखाई दे रही है और कुछ मछली के पीस भी नज़र आ रहे है।

इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और नीचे कुछ कार खड़ी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक किला दिखाई दे रहा है जहां पर पार्क छोटा सा नजर आ रहा है।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

इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक सलून दिखाई दे रहा हैं जहां पर एक लड़का अपनी कटिंग दिखता नजर आ रहा हैं।

इस इमेज मे देखियेगा सामने यहां पर एक नदी दिखाई दे रही है और आस पास कुछ पेड़ लगे हुए है आसमान मे सूरज ढलता हुआ नज़र आ रहा है।

इस इमेज देखियेगा यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और यहां पर एक बड़ा सा गेट भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बड़ा सा मॉल दिखाई दे रहा है जहां पे कई सारे दुकानें और शॉपिंग करते लोग नजर आ रहे हैं।